वह एक रोड़ एरिया है उसके रोड़ के ऊपर मेट्रो का पूल है जिसके ऊपर मेट्रो जा रही है| बाहर बहुत-सी गाड़ियां चल रही है।

यह एक व्हाइट कलर की दीवाल है दीवाल पर अ रेड कलर से पेंट हुआ है एण्ड उसकी जो चोटी एण्ड मीनार है उस पर भी व्हाइट ग्रीन एण्ड येलो कलर से पेंट हुआ है उ --

जहाँ एक पब्लिक मार्केट है यहाँ पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर येलो कलर का एक बैरन है एंड नीचे की तरफ एक जाली है जाली के अंदर एक शटर है उ --

एंड यह की जो दीवाल है उसमें वाइट कलर का पेंट हूआ है उसके सामने की जो खिड़की है उसमें ब्राउन कलर का पेंट हुआ है ब्रा दीवाल के कार्नर पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हूआ है।

दीवाल है दीवाल मे ब्लू कलर का पैंट है जिसमे एक कार्टून बना हुआ है।